पिले रंग के बहुत सुन्दर-सुन्दर फूल रखे हुए है यहाँ पर दिवार का रंग सफ़ेद है तथा यहाँ लाइट लगी हुई है जो पिले रंग की है।

दिवार का रंग पीला है पंखे है पंखो का रंग सफ़ेद है यहाँ पर बहुत सारी बाल्टी रखी है जो स्टील की है।

सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है बादल सफ़ेद नीले और साफ़ है यहाँ पर बड़े-बड़े पेड़ भी है जो हरे तथा गहरे रंग के--

जैसा की मै देख पा रही हूं यहाँ पर कुछ बच्चे जमीन पर बैठे हुए है जो कुछ बना रहे है उनके हाथ में कैची पेपर पैन --

और यहाँ पर आम्बो सुकमा लिखा है जो स लाल रंग से है एक पीछे बैनर लगा है जिसमें बहुत सारे लोगो के तस्वीर है।

दूर एक आइलैंड भी बना है जो हरे रंग का है।

जैसा की मै देख पा रही हु मुझे यहाँ पर एक ट्रेक्टर दिख रहा है जिसका रंग नीला और सफ़ेद है यहाँ पर एक जमीन का रंग काला है पेड़ लगा हुआ है जो हरे रंग का है।

और नारंगीय और उसमे सफ़ेद रंग भी है ईमारत बहुत बड़ी - बड़ी बनाई गई है।

चारो तरफ क्यारी बनी हुई है हरे-हरे पेड़ लगी हुई है बादल का रंग साफ नहीं है कुछ पेड़ है हरे और काले दिख रहे है पेड़ बड़े-बड़े भी है। --

जैसा की मै देख पा रही हूं मुझे यहाँ पर एक महिला दिख रही है जो नृत्य कर रही है उसने लाल रंग के साड़ी पहनी तथा उसके बलाउज पीले रंग का है।

यहाँ पर कुछ कार भी है जो सफ़ेद रंग की है दूर -दूर बड़े - बड़े हरे - हरे पेड़ दिख रहे है बादल --